इस बोर्ड पे लाल रंग से कृष्णा ड्राई क्लीनर्स लिखा हुआ है।

और एक दीवाल पे बिरला सीमेंट परफेक्ट लिखा है।

यह दृश्य एक डेम का लग रहा है जहां पर पानी का बहाव है।

एंट्रेंस एक दुकान का लगा रहा है जहां पर बहुत सी सिंक और टॉयलेट लगी हुई है।

जैसे पीनट बटर वगैरा और सॉस वगैरा रखे हुए हैं।

गेट पे कुछ लिखा हुआ है गेट लोहे रंग लोहे से बना हुआ है।

कुछ व्यक्ति आ रहे हैं और कुछ औरतें जा रही हैं।

यह दृश्य एक जिला सेवायोजन कार्यालय लखीमपुर खीरी का लग रहा है।

एक ब्यक्ति अंदर से बाहर की ओर आ रहा है उसकी शर्ट का कलर पिंक कलर का है।

स्टेशन की छत का कलर नीला है उसी के पास में एक व्यक्ति खड़ा है।

और बहुत से टायर रखे हुए हैं टायर का कलर काला है।

यह दृश्य एक रोड का है जहां पर बहोत सारी कंप्यूटर की दुकानें लग रही हैं।

कुछ व्यक्ति खड़े हुए हैं दो मोटरसाइकिलें खड़ी हुई है।